जैसा की मैं देख सकती हूँ ये एक मंदिर दिखाई दे रही हैं ये मंदिर --

जैसा की मैं देख सकती हूँ यहां पे एक जिम सेंटर है और इस जिम सेंटर मैं बहुत सारे सामान रखे गए है लोहे के है सारे सामग्री जो भी है सा--

अरे लोहे के हैं स्टील्स के हैं यहाँ पर सभी अपने स्वास्थ बनाने के लिए आते है ये जिम सेंटर में सभी जो एक्सर्साइज़ करते हैं वर्काउट करते हैं --

ग्रे कलर की जैकेट ब्लू जींस और ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई है।

यह पूरा डेकोरेटेड किया गया है यह हॉल यह हॉल बहुत ही बड़ा और बहुत ही ब्यूटीफुल है यहां से वाइट कलर के सोफ़े लगे हुए हैं सामने की तरफ़ और पीछे की तरफ बहुत खू--

जैसा कि मैं देख रही हूं सुबह का वक्त है नीला आसमान है धूप है बहुत कड़वी यह बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है जो ब्लू और स्काई ब्लू में है बिल्डिंग --

रूम में एक ए_सी लगा हुआ है बहोत सारे वायरिंग दिख रही है स्विच बोर्ड दिख रहे हैं।

सामने वाले पेड़ में व्हाइट व्हाइट चेक्स बनी हुई है छोटे छोटे प्लांट्स हैं बुशेष है बहोत सारे।

एक ब्लू कलर के गेंजी पहेंके जो व्यक्ति खारे है ईए जो हात मैं लिए हो फोन क्लिक से फोटो ले रहे हैं।

प्‍लास्टिक के फूल्स लगे हुए हैं कलरफुल फ्लॉवर्स लगे हुए हैं यहाँ पर रंग-बिरंगी कलर --

यहाँ पर एक काँच का एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है ए.टी.एम. के बाहड़ में ए.टी.एम. के बाहड़ के पास में जो दीवार है वहाँ कुछ बैनर्स लगी हुई हैं कुछ पोस्टर्स लगी हुई हैं।

जैसे कि मैं देख रही सुबेह के वक्त है वो कड़ी धूप नजर आ रही है मुझे ऊपर की तरफ से यहां बहोत सारे से हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं।

हरे-हरे घास दिख रहे हैं बहुत सुंदर लग रहा हैं ये सिर्फ पेर है बने हुए है यहां पर यहां साइड में एक लोहा का गेट दिख रहा है मुझे --

नजर आ रहा है वहां बहुत सारे वायर्स हैं एक सामने में एक बैनर की तरह एक रोड में लगी हुई है उसमे।

लिखा हुआ है रॉयल इन फील्‍डस लिखा हुआ है पीछे की तरफ सीमेंट भालू ईटें रखी हुई है छोटा सा पिलर की तरफ घेरा हुआ है एक ईटा से --

धूप है पीछे की तरफ छोटे-छोटे घर दिखाई दे रहे हैं दो तालाब है बीच में जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है सभी के लिए--

पीछे की तरफ दो बिल्डिंगे नजर आ रही है एक बिल्डिंग पूरे सफेद रंग में है एक बिल्डिंग लाल और पीले में नजर आ रही है सामने की तरफ एक लैंप पोस्ट है जहां से वायर जा रहा है और--

कुछ पुरानी घिसी पिटी बिल्डिंग नजर आ रही है यहां सिर्फ बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहां एक सफेद रंग का गाड़ी पार्कड है यहां घास --

इसके ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है एच_पी का लैपटॉप है पास ही में कैलकुलेटर रखा हुआ है पेन की बॉक्स रखी हुई है एक चेयर दिख रहा है उस चेयर के ऊपर एक पैंफलेट रखी हुई है।

जैसे कि मैं देख रही हूं और मुझे यह एक गांव की एरिया नजर आ रही है दोपहर का वक्त है बहुत कड़ी धूप नजर आ रही है यहां से मुझे जंगल पेड़ पौधे नजर आ रहे है भर--

और यहाँ पर लगता हैं बारिश हुई हैं मिट्टी गीला पडा हुआ हैं गड्डा हैं बहुत गंदा तरीका से --

यहां पर जो टाइल्स हैं वो रेड एंड ब्राउन कलर की दो और चेयर दिख रहीं है क्लास रूम्स के बाहर बहोत सारे बोर्ड लगे हुए हैं कलरफुल --

और इस बोट्स से ऊपर कुछ-कुछ छोटे-छोटे पेपर्स पोस्टर्स लगे हुए हैं एक वॉल क्लॉक बी दिख रहा हैं --

कुछ व्यक्ति सवारी कर रहे हैं पीछे की तरफ बहोत बड़े-बड़े जंगल दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े पेड़ हैं यहां पर सामने की तरफ बड़े-बड़े पत्थर है।

साफ सुथरा जगह है बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं फिर घर है जो वॉल में जो--

जैसे कि मैं देख रही हूं सुबह का वक्त है सफेद रंग की बिल्डिंग है सफेद रंग की बिल्डिंग में कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं अंदर की तरफ एक महिला जो गुलाबी रंग का--

गुलाबी रंग का कपड़ा पहना हुआ है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं बहुत खूबसूरत सी गार्डन की तरह।

स्विमिंग पूल में ज्यादा गेहेड़ाई नहीं है स्विमिंग पूल के अंदर जो टाइल्स लगी हुई है वह ब्लू कलर कि डॉट डॉट टाइल्स है स्विमिंग --

स्विमिंग पुल के पीछे की तरफ एक मड़ून कलर की गाडी जो पार्केड की गयी हैं --

टाइल्स के कलर व्हाइट एंड ब्लैक में लगे हुए हैं यहाँ बहुत सारा पेशेंट बेड हैं --

जैसे कि मैं देख रही हूं ये बहुत सुंदर सा डेकोरेशन किया गया है इस जगह को जैसे कि यहां पर कोई पार्टी चल रही है यहां पर टेबल चेयर्स लगे हुए है डीजे सेटअप किया गया है डीजे की स्पीकर्स रखे हुए --

रखे हुए हैं लाइटस लगाई गई है डेकरैशन की गई है बहुत खूबसूरत से कलरफुल कपड़े से यहाँ कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी हुई हैं बहुत सारी मुझे कुछ --

यहाँ पिंक कलर की वाइट कलर की टेबल डली हुई है चेयर भी वाइट कलर की कपड़ों से ढकी हुई है कारपेट लगी --

जैसा की मैं देख रही हूँ सुबह का वक़्त है नीला आसमान है बादल सफेद और हल्के काले रंग में हैं यहाँ बड़े बड़े जंगल दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े पेड़ हैं यहां --